दे रहे हैं और इस जिम मे एक बड़ा सा मिरर भी लगा हुआ है।

और जंगल के बीचो बीच एक रास्ता भी गुज़र रहा है उस रास्ते में कुछ पत्थरो द्वारा एक रोड बनाई हुई है।